इसमें बोल बढ़ता है घर में तार लगता है इसे जोत होता है।

मछली बिका रहा हैं पुठिया मछली हैं आदमी खरीद रहा हैं।

बहुत दवा है इससे इलाज होता है ये खाया जाता है खाता है तब पानी पीता है तब जीता है।

बहुत ही निमम्न है बहुत पानी है बहुत घना है बहुत जंगल है बहुत वाइट लग रहा है।

पेर है तरबुज्जा का अथी है बगान आदमी रहता है बहुत रड से घेराया हुआ है इसमें तीन मोतरसालकि है चार आदमी है।

उधरकारी अथी मार्केट है बहुत आदमी है कोनो बच्चा का धरा हुआ है कोनो हेलमेट पेना हुआ है टी_वी बहुत सुंदर है आदमी बहुत रहता है बहुत --

बेंच बनता है स्कूल में बच्चा सब उस पर बैठ के पड़ता है बहुत व्हाईट घर है।

उसमे रखा हुआ है बहुत निमन घर है उधर मेला लगा हुआ है बहुत आदमी रहता है बहुत आदमी घूमता है बहुत--

बहुत आदमी बैठा हुआ है पैसा निकल रहा है पैसा ले जा रहा है।

इसमें बहुत दवाई है बहुत आदमी बैठा हुआ है इधर खाली कॉपी किताब बिकाता है इसमें अगरबत्ती है बहुत चीज़ है।

बहुत महंगा बिकाता है बहुत चमकीला दुकान है बहुत आदमी इसमें किन्ता है ले जाता है खरीदता है पड़ता है लिखता है बहुत आदमी रहता है इसमें--

पर पंखा लगा हुआ है बहुत रउदा है उधर गुतका है बहुत आदमी खरीद रहा है बहुत लड्डू है बहुत निमम्न है किराना दुकान बहुत सुंदर है उजला है।

एक कछुआ का बच्चा है। वह लग रहा है मर गया हुआ है उज्जैन बहुत घास है बहुत एकदम सुंदर लग रहा है।

बहुत एकदम फर्स्ट कर रहा है कोनो सेकंड कर रहा है बहुत निमम्न जगह है बहुत बोर्ड लगा हुआ है पर आदमी पढ़ता उढ़ता है।

बहुत आदमी रहता है बहुत किनता है बहुत निमम्न दुकान है बहुत ही जनसालकी लगा हुआ है बहुत आदमी है बहुत घूम रहा है --

बहुत इस जन अधिक कुर्सी है बहुत निमन है बहुत घना जंगल है लाइट है आदमी बैठा हुआ है कभी ग्यारह हजार गिर जाएगा बहुत बोल है बहुत--

लग रहा है एकदम निमन है चार मंजिल घर है कखनियों गिर सकता है बहुत निमन है गाड़ी है इसमें चार चक्का है बलेरो है।

लाइट बरता है सबके घर में रहता है एकदम मस्त है गुलाब का फूल है।

कौनो व्हाइट घर है उधर जंगल है इधर बास है बहुत आदमी रहता है इधर एईजन खाना पीना बन--

बाइक है दु अ पर पेर है बहुत निम्मन है इसकुल बहुत इसमें लइका सब पर रहा है बहुत बच्चा सब फस्त कर रहा है बहुत तीना का घर है।